यह बैंक ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का ए.टी.एम. है जहाँ के दरवाजे खुले पड़े हैं। इसके अंदर एक ए.टी.एम. मौजूद है। यहाँ हम अलग-अलग तरह के बहुत ए.टी.एम. यूज़ करके पैसा उठाया जा सकता है जो कि हमारे सुविधाजनक के लिए अच्छे हैं।